यहां पे नीचे में टाइल्स लगा हुआ है जोकि टाइल्स का कलर करिया है।

इसमें हॉस्पिटल में लिखा हुआ है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र।

और उसमें पेनपचढ़ा भी किया गया है बीज बारी बारी बारी एक कोना में रखा गया है।

जिसमें कपड़े की दुकान भी है और बहुत सारे लाइट भी लगाए गए हैं।

यह एक पार्क का चित्र है जिसमें बहुत सारे जेंस और लेडीज भी है।

एक किराना दुकान का इस्टोर है। जिसमें बहुत सारे अचार का डब्बा रखा गया है।

मनुष्य भी है और पानी का बोतल भी रखा गया है।

पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं हरे भरे एक रोड भी दिखाई दे रहा है।

यह एक घर दिखाई दे रहा है जिसके बाहर पानी का दिखाई दे रहा है कुछ झाड़ी पत्ती भी दिखाई दे रहा है लाइट भी दिखाई दे रहा है।

घर करकट का बना हुआ है पका का नीचे दिया गया है इंटा का बना हुआ है।

यह एक पंडाल का चित्र दिया गया है जिसमें बहुत सारे लाइट्स लगाए गए हैं और फूल भी लगाया गया है।

यह एक पम्प बेचने वाला का चित्र दिया गया है।

इसमें ट्रक का ऊपर येलो कलर का चादर ढका हुआ है।

यह एक गमला में रखा हुआ पेड़ का चित्र दिया गया है।

उसके ऊपर एक भी लगाया गया है और एक ग्रिल भी दिखाई दे रहा है।

और बहुत बड़ा मोटा तार भी दिखाई दे रहा है।

यह एक जिम का चित्र दिया गया है।

और दो आदमीन का टी शर्ट का कलर व्हाइट है और एक का कलर पिंक है और पैंट का कलर ब्लू है।

और बहुत सारा पोस्टर भी लगाया गया है और बड़ासा दीवाल घड़ी भी टांगा गया है।

यह एक बुक दुकान का चित्र दिया गया है इसमें बहुत सारे बुक दिखाई दे रहे हैं।

दीवाल का कलर व्हाइट दिखाई दे रहा है।